सब तरफ भी धान लगा हुआ है और एक पीछे में नर्सरी सन आर.के. नर्सरी --

और ये रात का पिक्चर है और यहाँ पर --

मिल रहा है जिससे कि सब समान या कुछ भी मतलब की चावल या कुछ भी हो सकता है सब्जी गोल गोल वगेरह और ऑटो में बस--

घूमने वाली जगह है बहुत लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए यहाँ से व्यूह बहुत ही प्यारा--